और वह इससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे--

दो तीन पंखे हैं और एक बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके पीछे एक पीले कलर का घर दिखाई दे रहा है। इसके चारों ओर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रह --

यह चित्र किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का है।

जिसमें अलग अलग प्रकार की डबल डोर और सिंगल डोर वाली फ्रीजें दिखाई दे रही हैं जो की वोल्टस कंपनी की--

और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी है और ऊपर एक ऐ_सी रखी हुई है जिससे हवा निकल रही है।

इस चित्र में एक रोड दिखाई दे रहा है जिससे एक गाड़ी पास होती हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक कमरा दिखाई दे रहा है जो कि किसी श्रृंगार स्टोर का है जिसमें एक युवक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उस दुकान का मालिक बैठा हुआ दिखाई दे रहा।

साइड में एक औरत दिखाई दे रही है। तीनों का चेहरा ढका हुआ है।

और ऊपर मे एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और दुकान में अन्य अन्य प्रकार की मेकप की समाग्रिया रखी हुई--

ये लोहा लक्कड़ और हार्डवेयर की चीजें दिखाई दे रही हैं।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

बलूंस लगे हुए दिखाई दे रहे है पिछे में एक वाइट बोर्ड दिखा रहा है।

बहुत से आदमी स्टेज पे खड़े हुए दिखाई दे रहे है और बहोत से स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे है।